बहोत ज्यादा भीड़ है और बहोत से लोग आए है।

यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यह एक बहोत ही बड़ा मार्केट है जो की कपड़े का मार्केट लग रहा है।

यहा पर हम देख पा रहे है कि--

भीड़ भलाके वाला इलाका हैं जहां बहोत भीड़--

लगी हुई है और काफी गाड़ियां आकर जमा हो चुकी है बहोत सी--

यहां बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया है।

देख पा रहे हैं की बहोत सारे छोटे छोटे बच्चे योगा कर रहे हैं।

जो की बहोत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और नीचे भुरे रंग का टाईल्स लगा हुआ है।

और नहाने का मजा ले रहे हैं और चारों तरफ--

बाहर एक कारीगर बैठा हुआ है।

जोकि माला बुनने का काम करता है।

बहोत से लोगों ने शाल और कंबल ओढ़ा हुआ है और एक--

यहां पर हम देख पा रहे हैं की कुछ लोगों द्वारा--

सामने सूरज भी दिखाई दे रहा है और--

सामने सेल्फ पर बहोत सी सुंदर सुंदर डॉल्स रखी हुई है जो बहोत सुंदर दिखाई दे रही है।